दुकान में रोशनी अच्छी तरह से लगी हुई है दुकान के सामने कुछ लोग खड़े हैं।

यह एक पहाड़ी इलाका का दृश्य है बीच में एक छोटी सी दुकान या रेस्टोरेंट दिख रही है जिसका नाम मिलन रेस्टोरेंट है।

रेस्टोरेंट का बोर्ड पर भोजन का तस्वीर लगा हुआ है।

छोटी सी नदी या तालाब भी दिख रही है रस्ते के पास।

लड़के के पास एक नीला पानी का कुंड भी दिख रहा है।

ऊपर से चमकदार लाइट्स लटक रही है।

दोनों तरफ पेड़ और हरियाली है।